बड़े अराम भी दिख रहे है और यहां पीछे दुकानें भी है बहोत सारी यहां पे--

ये एक जिम कि दुकान है और यहाँ पे--

बहोत सारे डंबल्स रखा गया है वेइट लिफ्टिंग है बहोत सारी एल_इ_डी लाइट चल रहे--

और यहां पे जिओ सिम्स पोर्ट किए जाते हैं रिचार्ज भी वहां पे किया जाता है यहां पे पे--

लाइट के खंभे है वायरिंग है यहां पे बोरिंग मारी जा रही है और यहां पे एक बोरिंग की गाड़ी भी खड़ी हुई है।

ऊपर क्रेन भी दिख रहा है फर्शियों को चढ़ाते हुए और नीचे बहोत सारी मिट्टी कंकड़ पड़ी हुई है गाड़ी भी है हेलमेट है यहां पे लोग भी है यहां पे।

ये आजू बाजू बहुत सारे घरा हैं सामने बीच में रस्ता है।

आजू बाजू दुकानें भी है आजू बाजू--

ये एक ऑफिस दिख रही है यहां पर पानी की बोटल है प्रिंटर है और--

ये एक वाटरफॉल है ऊपर से पहाड़ में से पानी बहता हुआ फतरों पे--

आबिदे यहां पे कपड़े मिलते हैं। ऊपर एल_ई_डी लाइट चालू है। पिंक कलर का वॉल किया गया पेंट्स यहां पे।

यहां पे कैमरे का बॉक्स भी रखा हुआ है फियाना भी यहां पे कपड़े भी बहुत सा--

शॉप भी है यहां पे वॉटर बॉटल भी है आजू बाजू बड़े बड़े झाड़ा है।

यहां पे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के यहां पे--

बॉक्सेर्स बॉक्सेर्स भी है यहां पे बैग्स भी मिलते हैं यहां लेडीज बैग्स हैं य --

नीचे जा रहा है और यहां पे बड़ा सा फत्थरा दिख रहा और उसके बीच मे--

ये एक फूलों की दुकान है यहां पे बहोत सारे कलर कलर के फूल है।

ये एक बड़े बड़े यहां पे झाड़ा दिख रहे हैं यहां पे बाजु में बड़ी सी कंपनी दिख रही इंडस्ट्री --

यहाँ पे कैमरे से उपर लाइट के फोकस भी यहाँ पे दिख रहे--

और यहां पे ऊपर आसमान दिख रहा है बाजु में लाइट की खंभे है वायरिंग भी यहां दिख रही है नीचे।